जो की गर्मी के लिए चाहिए स्वेटर्स के डिजाइन काफी सुन्दर लग रही हैं।

आप देख सकते हैं सामने एक अम इस चर्च दिख जैसा कुछ लग रहा है यहाँ पर।

एक झरना दिख रहा है और बहुत सारी पेड़ दिख रहे हैं |

पार्क के बीचो-बीच एक पानी का उम्म पानी की कुइयां दिख रही है।

धुआँ दिख रही है और --

पास में एक कार रखी हुई है | ऊपर एक खम्भा दिख रहा है |

एक हेलमेट रखा हुआ है |

आप देख सकते है सामने एक है यहाँ पर दो लोग दिख रहे है एक इंसान ने हाथ में कपड़े रखे हुए है।

कुछ टायर भी दिख रहे हैं ऊपर आप देख सकते हैं एक खिड़की दिख रही है।